बल्डिंग के ऊपर एक टॉवर नज़र आ रहा है। बड़ा सा एक बोर्ड दिख रहा है जिसमे वेब सिनेमास लिखा हुआ है।

यहाँ एक बड़ा सा कच्चा रास्ता दिख रहा है जिसके ऊपर एक बड़ी सी गेट नज़र आ रही है। गेट पे --

यहाँ एक कच्ची जमीन दिख रही है जहाँ पर एक अदमी रेड कलर के शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट में खड़ा है।

यहाँ एक छोटा सा रूम दिख रहा है। जिसको एं टीने से कवर किया गया है।

यहाँ एक बड़ा स्टेशन दिख रहा है जिसके दो प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है। बीच में --